पेड़-पौधा वगैरह सब चीज है।

काफी अच्छा रेड कलर का है और व्हाइट कलर

और एक झंडा लगा हुआ है और रेलिंग भी काफ़ी अच्छा से बनाया हुआ है।

किनारे-किनारे रोज वगैरा भी दिख रहा है कुछ लोग भी दिख रहे हैं आ --

रियायती हो यहां पे सभी पिज्जा मोमोज चाउमिन वगेरा सभी मिलता है।

अभी दान दक्षिणा जो भी चढ़ाया हुआ है बेलपत्र इ सब है।

अम्म ये सब मेहंदी का दुकान है पेप्सी --

ये क्या बोलते है टाइल्स लगाया हुआ है कुछ लोग भी --

ये पानी से बाहर निकाल कर आया है काफी विषैला मगरमच्छ है।

इनका इनकम भी अच्छा आ जाता होगा ब्रेड में दुकानदार पता नहीं अभी नहीं दिख रहे हैं।

यहां मछली का दुकान है सभी लोग मछली बेच रहे हैं काफी बड़ा-बड़ा मछली दे --

और ये अच्छा है सब सुंदर लग रहा है देखने में।

अच्छे से इनलोग बैटिंग कर रहे हैं लाइट बहोत बड़ा-बड़ा दो ठो लगा हुआ --

एक सरकारी विभाग की तरफ से यह चीज होता है सरकारी वन विभाग में ये गुमटी बनाया हुआ है उसमें रखा हुआ है।